यहां पे ये पानी में बच्चे खड़े हैं यहां पे पानी-पानी दिख रहा हैं।

यहां पे ये मकान सा है यहां पे इनके आगे--

साईकल ले रही है और यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है।

सोने का समान रखा हुआ है और यहां पे ये आदमी है ये--

काली मां का भी शिव जी का भी राधा कृष्ण का भी आप दे सकते हो यहां पे बहोत अच्छे-अच्छे मंदिर दिख रहे हैं।

बहोत बड़े बड़े डिब्बे रखे जैसे मोटे या पतले हो सकते हो ये दवाइयां है।

यह बस है बस में लाइट ऑन हो रही है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे झूले लगे हुए हैं यहां पे नाले लगी हुई है।

ये यहां पे रूम है यहां पे पानी की बॉटल रखी हुई है बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है पर्दे लगे हुए हैं।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

यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे पारक है पारक में बहोत से आदमी एक साथ बैठे हुए बहुत इकट्ठे हो रहे हैं।

और यहां पे एक टावर भी लगा हुआ दिख रहा--

ऑफिस है यहां पे यहां पे लाइट लगी हुई है।

आदमी इकठ्ठे हो रहे हैं और यहां पे माता का मंदिर है।

और यहां पे पानी दिख रहा है यहां पे जो पानी कचड़े है वो बहुत तेजी से बेह रहे हैं।

ये यहां पे देख सकते हो आप यहां पे बनी हुई है। यहां पे--

और यहां पे देख सकते हो आप खंभे लगे हुए हैं देखने में बहुत अच्छा लोकेशन आ रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है आप ये देख सकते हो।

बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और यहां पे चारों तरफ बहुत मस्त से पेड़ मंदिर बना हुआ मंदिर बहुत अच्छा दिख रहा है आप देख सकते हो।

ये यहां पे दो आदमी खड़े हुए हैं ये ले रहे हैं।

यहां पर अंदर गाड़ियां दिख रही है यहां पे--

यहां देख सकते हो आप यहां पे हैप्पीनेस लिखा हुआ है।